लगता है की इसाई धर्म का कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है आगे पादरी भी बैठे हुए है।

एक लैपटॉप सर्विस सेंटर का वो यहां एक लैपटॉप सर्विस सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है नीचे ये बड़ा बड़ा वृक्ष है।

उसके अगल बगल में बड़ा मैदान है। विभिन्न प्रकार का वृक्ष--